और बहोत अच्छा लग रहा है सब कुछ ठीक ठाक है यहाँ पर अच्छा खासा दिख रहा है। यहाँ लेडीज़ जेंट्स सब लोग हैं धुवां छोड़ रहे हैं लोग जो की बहोत बड़ा लग रहा है देखने में और खूबसूरत भी हैसबकुछ ठीक ठाक --